घर में मुझे घर के अन्दर एक रूम दिख दिखाई दे रहा है।

और घर है खिड़की विड़की खुला हुआ है फिर यह पेड़ भी दिख रहा है इधर को फिर टीना भी दिख रहाइधर में--

झंडा का फ्लेग गोला लगाने वाले अभी दिख रहा है पोस्ट रास्ता दिख रहे इधर में सुखा वाला घास है।

बोर्ड बोर्ड बाहर मे रख के है जाली वाली लगा के घर के लिए।

इन सूखा हुआ पेड़ सब है ब्रिज भी है यहा यहां में सीमेंट का ब्रिज है फिर हरा भरा घास है सुखा वाला घास है।

इधर में रस्सी वस्सी लटक के बगल में घर भी दिख रहा है।

आदमी लोग भी है औरत लोग भी है सब जमा है इधर में।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

ब्लू कलर का चेयर है येलो कलर का चेयर है लाल कलर का चेयर भी दिख रहा है।

और इधर को कुरकुरे वर्कुरे चिप्स विप्स खान पान बेचते हैं कार्टून वार्तून रखे हैं नीचे में।

एक पहाड़ी इलाका नजर आते हुए इधर में बेंबू एंबु है आदमी लोग भी आया हुआ है पानी आ रहे हैं।

पीछे मे और भी बहोत सारा लाइट पोल सब है वहाँ से लाइट जाते हुए आसमान में बादल है धूप दिखाई नहीं दे रहा--

और बादल वादल भी बहुत ज्यादा है पेड़ पौधे सब है।

पंखा दिख रहा है खिड़कियां है लाइट जल रही है।

बीच में एक एक ठो पोस्ट है वो भी तफ्ता का है इधर में लाल वाला चेयर हैं।

आलू है आलू का बगल में ग्रीन वाला सब्जी भी है।